इस तस्वीर मे एक बैंक दिखाई दे रही है जिसके नाम के केरना बैंक लिखा है।

बैंक के सामने मोटर साइकिल खड़ी हुई है एक व्यक्ति कुर्सी डाले हुए बैठा हुआ है बाहर दो व्यक्ति निकाल रहे --

मुझे इस तस्वीर मे पानी दिखाई दे रहा है पानी के बीचों-बीच कुछ पत्थर की सिडिया जैसी बनी हुई दिखाई दे रही है --

तस्वीर में एक व्यक्ति कुर्सी पे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है दूसरा व्यक्ति उसके बाल काट रहा है।

छ बैनर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ ट्यूबलाइट भी लगे हुए दिखाई दे रहे है प्लर में कुछ क्रैक दिखाई दे रहे --

एक पंडाल के नीचे खड़ी हुई है जहां कुछ बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं वहाँं पर गन्ने भी रखे हुए हैं और --

हाथ में मोबाइल रखे हुए हैं। उस --

उसर पे टोपी पहने हुए है वहाँ पे ल् --

तस्वीर में एक किला दिखाई दे रहा है किले के बाहर खाली सूखी मिट्टी दिखाई दे रही है मिट्टी के पास में एक व्यक्ति खड़े हुए दिखाई दे रहा है।